और पेड़ भी लगे हुए हैं।

गमले रखे हुए है और पेड़ पौधे भी--

इस फोटो में हमें एक बड़ी ही सुंदर सी--

और बड़ी सुंदर लाइटें भी लगाई गई हैं बाहर कुछ लोग--

खेल रहे हैं ग्राउंड का--

है जहां अलग अलग तरह की मशीनें लगी हुई है।

ये साइकिल लाल और काले रंग से--